और सीनरी भी लगी है और ऐ_सी भी लगा हुआ हैं एक स्टेबलाइजर भी हैं और --

यह एक बहुत बड़ी हॉल है और इसमें काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे काफी खिड़किया है और ज्यादा भीड़ लगी हुई है और एक आदमी माइक पर लेक्चर दे रहा है।